और यहां पाउडर है पैड है।

जिसमें मोबाइल बिकती है एक एक आदमी मोबाइल अपने कस्टमर को--

और छोटे-बड़े बहुत सारे दवाइयाँ उसमें है।

एक जगह है यहां पे दो मंदिल है वहां पे बहुत सारे लेडिस और जेंट्स और बच्चे हैं।